ऊपर सीलिंग का रंग सफेद है इसमें गुब्बारों से सजाया गया है।

का रंग लाल भरा और सफेद--

बहुत सारी लाइटे जल रही है और सामने बहुत सारे आदमी और औरत है।

इस फोटो में ऊपर से पानी आ रहा है यहां पानी जमा हुआ है।

पीछे एक सुखा सा पतला सा पेड़ है जो भूरे रंग का है।

दो तीन है और उन सभी का रंग सफेद है और प्लाई पर सनमाइका भी चिपका हुआ है सफेद रंग--

बहोत सारे कपड़े हैं और कपड़ों के पीस भी है।

एक घड़ी लगा हुआ है जिसमें घड़ी लिखा हुआ है और वो लाल और पीले रंग का है उसके कांटे का रंग काला है।

ऊपर में एक लकड़ी के रैक लगे हैं और नीचे लोहे के--

इस फोटो में सामने करकट का सेट बना है और सामने बहुत सारा सोफा रखा हुआ है जो सोफा का सिर्फ स्ट्रक्चर है जो लकड़ी से बना और यह भूरे रंग का है।

बहुत सारे जूते रखे हुए हैं और बहुत सारे सैंडल रखे हुए हैं।

इसके में सफेद रंग का कुछ लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक रोड है और यहां पर एक पुल का किनारे का रेलिंग है जो पीला और काला पेंट किया गया है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा जगह है।

उसके पिलर पे भूरा रंग है और जो उसका भी है वो लाल रंग का है।

इस फोटो में एक बड़ा सा पोस्टर है और अंदर बड़ा सा जगह है जहां पर बहुत सारे दीवाल हैं।

रैक में बहुत सारे एल्बो सॉकेट और टी रखा हुआ है और बहुत सारे ज्वाइंट के चीज रखे--

एक टेंपू जा रहा है जो काला और पीले रंग का है।

वहां पर ए_सी का बाहर में कंप्रेसर रखा हुआ है ग्रे रंग का।